जोकि काफी जगह अच्छा लग रहा है।

ये सारी आरी जो है --

किसी मीयुजीउम का सीन है जो कि बोद्ध धर्म --

यहाँ पर जेन्ट्स का संबंधित जो भी काम होता है।

और खेल के मैदान को उसी तरह हमे हरा-भरा --

देखि देखने में --

जिम है जो कि जिम में जो अभी के समय में तकरीबन --